मुझे इस चित्र मे एक दीपक नाम की दुकान दिख रही है।

और कुछ महिलाएं अपना आभूषण भी खरीद रही हैं और कुछ लोग --

और यह बहोत ही बड़े क्षेत्रफल में बनाया गया है।

और कुर्सियों पर दो लोग जैसे बैठे हैं।

मुझे इस चित्र में एक स्कूल का नजारा दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक ट्रेन दिखाई दे रही है।

मुझे इस चित्र में एक फल की दुकान दिखाई दे रही है।

इसमें ज्यादा फूलगोभी और पत्तागोभी दिख रही है।

और ऊपर से पन्नी भी तानी गई है जो अच्छा दि--

मुझे इस विद्यालय में एक कार खड़ी दिख रही है।

और कुछ लोग आसमान में फैक्टरी से देख रहे हैं।

और बढ़िया तरीके से जिम करते हुए नजर आ रहे--

मुझे इस चित्र में कादरी टायर वर्कशॉप दिख रहा है।

और सभी बाल्टी में आग-आग करके लिखा है।

मुझे इस चित्र में रामदास स्वीट एवं नमकीन दिख रही है।

और इस नमकीन में कुछ गुब्बाड़े भी लगाए गए है।

यह बहुत अच्छी बात है कि मिठाई की दुकान खुल गई है।

मुझे इस चित्र में एक बहोत ही क्लीनिक का सामान दिखाई दे रहा है।

और इसका उद्घाटन अभी अभी किया गया है।

मैदान के सामने रैलिंग लगना बहुत ही खुशी की बात--

मुझे इस चित्र में एक टीचर दिख रहा है।